इस तस्वीर के अंदर एक महिला है जो कत्थककली डांस कर रही है।

शायद फोटो एडिटिंग के कारण मुझे --

जो की हाथ में फेविकोल का डब्बा ली हुई है और किसी --

इस तस्वीर के अंदर मुझे दो शख्स दिख रहे हैं जो की एक कपड़ा बुनने वाले मशीन पर कार्य कर रहे --

और यहाँ पे बहुत सारे सी.सी.टी.वी. कैमरा भी लगा हुआ मुझे दिख पा रहा है और एक एल.ई.डी. सामने मेरे है।

एल.इ.डी. टी.वी. मेरे सामने दिख रहा है आँख के सामने --